एक रोड दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर की एक कार दिखाई दे रही है कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

मैदान दिखाई दे हरे कलर की घास लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक लेडीस दिखाई दे रही है उम् कुछ लेडिस और जेन्ट्स बैठे हुए --

कुछ आदमी दिखाई दे रहें हैं एक रोड दिखाई दे रही है एक ब्लेक कलर का ऑटो दिखाई दे रहा है।

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है रेड कलर की एक बस दिखाई दे रही है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे कलर के कुछ पाहाड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ घर बने हुए दिख रहे हैं।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

टा टाइल्स दिखाई दे रहें हैं।

पीले कलर की मिट्टी दिखाई दे रही है अ कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हरे कलर के।

कुछ खिड़कियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है सफेद कलर के कर्टेन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कल्याण संसाधन का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

कुछ पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ एक सफेद कलर का कर्टेन दिख रहा है।

ये आसमान दिखाई दे रहा है कुछ पहाड़ दिखाई दे रहें हैं।

अ क एक पाइप पड़ा हुआ दिख रहा है कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।